और ये एक कॉलेज का सीन दिखाई दे रहा है जहां सामने में वि विज्ञान भवन हैं मतलब ये साइंस हाउस ढेर सारा मोटर साइकिल लगा हुआ है आदमी बैठा हुआ है बीच में एक दो तीन चार पांच पेड़ है ।

यहा पर एक सब्जी मंडी दिखाई दे रहा है जहा पर एक ऊपर में रस्सी ढ़ेर सारा टंगा हुआ है।

नोट किसी भी शुभ अवसर पर काफी स्टॉल के लिए संपर्क--

यह पे ददी भवन लिखा हुआ हैं आगे में ढेर सारा पेड़ पौधा लगा हुआ हैं घास हैं यहां पर एक कुत्ता बैठा हुआ हैं लेफ्ट साइड में ढेर सारी बिल्डिंग इसने बनाई हैं दो मंजिला घर खड़ा कर दिया हैं जो बहुत बड़ा हैं।

एक टेम्पू जा रहा है एक आदमी आ रहा है एक पल्सर वाला भी जा रहा है आगे में पीला पिला बैरियर लगा है।

और सामने में एक पिलर हुआ है पिलर पे लगता है चड़ने का पर यह गुफा में धुप तो आ रहा है लेकिन दुकान दार में काफी अंधरे अँधेरा गुफा दिखाई दे रहा है।

और वहाँ पर पिज्जा मिलता है और यहां पर ढेर सारा मोटरसाइकिल दिखाए दे रहा है और वहां पर लाल पीला नीला उजला कलर का बैलून